इस फोटो में यहां पर एक रोड पर कार दिखाई दे रहे है सामने यहां पर एक महल भी नजर --

और यहां पर सामने कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

एक स्लाइडर दिखाई दे रही है जहां पर दो बच्चे खेल रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक नदी के ऊपर पुल नजर आ रहा है जहां पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में सामने यहां पर कुछ एक गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर कुमावत लिखा है।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

और यहां पर एक झंडा भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा हैं जहां पर सरकट हाउस लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा हैं और यहां पर एक नदी भी नज़र आ रही हैं और --

और यहां पर बेंच भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है जहां पर पानी भरा है और यहां सामने --

एक शॉप दिखाई दे रही हैं जहाँ पर वॉशिंग मशीन नजर आ रही हैं।

बाइक्स भी खड़ी दिखाई दे रही हैं।

बाहर यहां पर मछुआरे खड़े हैं उनके पास में ढेर सारी मछली नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक बिल्डिंग में दिखाई दे रही है जो रोड के किनारे बनी है।